यहां पे देख सकते हो परगति --

पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये लाल रंग का ट्रैक्टर है और यहां पे आप देख सकते हो--

के फूल और पत्ते देख रहे हैं यहां पे लाइट लगी हुई है बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है।

यहां पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे पेढ़ियां दिख रही है और यहां पे छोटा सा तलाब भी दिख रहा है।

बाइक भी खड़ी हुई है देख सकते हो यहां पे--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

यहां पे सारे आदमी खड़े हुए हैं देख सकते हो।

और यहां पे आप दे सकते हो ऊपर आसमान भी नीला दिख र--

यहां पे हरिहरक क्षेत्र सोनापुर मेला दो हजार उन्नीस लिखा हुआ है।

आदमी बैठे हुए हैं यहां पे ये--

पेड़ पौधे भी लगे हुए है पहाड़ दिख रहे है और ये एक औरत है इसमें हाथ में जड़ों म उठा रखा है यहां पे आप देख सकते हो।

पर्दे लगे हुए हैं और ये यहां पे एक लड़का और लड़की--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

और यहां पे ये दो लड़के हैं एक लड़के सफेद रंग के--

और ये इसमें बहोत अच्छी है इसमें टेबल सजा रखी है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।